यहाँ स्टेज पर दो लड़की डांस कर रही है| एक ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा है और एक ने सफेद कलर का ड्रेस पहन रखा है।

टेंट है और उके अंदर गुलाबी रंग की बह बत्ती जल रही है और कुछ लोग खड़े होकर--

जिसने हाथो में रंग के सामान आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही है और बहुत सारे लड़कियाँ लड़का काम कर रहा है ब्लू सारी पहनकर टीचर बहुत आगे में खड़ी है।

एक घास का छोटा सा मैदान है। एक अटैची पड़ी हुई है और अ बोहोत लाइटे एक स्क्रीन लगी हुई है। टाइले लगी हुई है।

जैसे महाराणा प्रताप की हो दो पिलर खड़े है उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर भी है और पेड़ भी लगे कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

जो लाइटे लगी हुई हैं वो बहुत अच्छी चमकदार है लाल रंग की लाइट है एक पंखा लगा हुआ है और दीवाल पर कुछ भी लगी हुई है।

नीचे तलाब हैं नीचे एक लड़का नहारा हैं उप-- भी लड़के नहारे हैं और लड़के चड्डी डालके खड़े हैं।